अम्मम् कलर फोन --

वोल मैं बहुत सारा--

और ए_सी लगा है।

बाहर बोर्ड लगा है।

गोल्डन कलर का --

डेकोरेट किया है और--

घर है बहुत सारा--

बना है जिस पे --

ग्रीन कलर की मैट बिछी हैकुछ लेडीज --

इस रूम में--

और अ बहुत कीचड़ और गोबर --